तथा तीन टब भी मुझे वहां दिखाई दे रहे हैं एक ग्रीन एक येलो और एक स्काई ब्लू कलर का टब वहां है।

और एक डबल बेड भी मुझे दिखाई दे रहा है और एक कपड़े रखने की अलमारी भी इसमें है।

तथा ल इसपे लाइटें भी मुझे र लगी दिखाई दे रही हैं।

इस पिक्चर में मुझे दो बाहर की साइड शेर के स्टेचू नजर आ रहे हैं।

यह एक कॉस्मेटिक की दुकान है।

कुछ औरतें हैं जिन्होंने स्टोल ओढ़ रखा है।

पीछे बहुत सारे डंडे लग रहे हैं।

इस पिक्चर में मुझे खाली ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत सारे कलर के बैग हैं जैसे कि पिंक येलो रेड ब्लैक एंड एक चेयर भी यहां रखी हुई है।

इसमें एक आदमी अंदर है। उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है तथा दो बाहर है।

इतनी व्हाइट एंड ब्लैक कुछ चैक टी शर्ट एक ने फुल व्हाइट पहनी है।

इसमें बहोत सारी रैक बन रही है।

तथा अंदर एक सिल्वर कलर की सीढी भी यहां रखी है।

इस पिक्चर में बहोत सारे गेट हैं।

कुछ लोग मछली बेचते और काटते नजर आ रहे हैं।

ऑरेंज कलर की बास्केट रखी हुई है।

एक ने रेड एंड ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई है।

जो की ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है।

पीछे पेड़ भी मुझे नजर आ रहा है।

पर्पल कलर कि शर्ट पहनी हुई है।

में येलो कलर की और व्हाइट कलर की लाइटें भी जल रही है।

बहोत सारी गोबी नजर आ रही है।

यह किसी खेत का दृश्य है।

इसमें बहुत सारी घास भी लगी है जो कि ग्रीन कलर की है।

बहुत सारे सिलेंडर रखे हैं।

ऊपर येलो कलर की लाइट जल रही है।

इसमें पीछे पंखे लग रहे हैं जो कि व्हाइट कलर के हैं।

और उसकी टी शर्ट वाइट कलर की है।

एक लेडिस मुझे आती इसमें दिखाई दे रही है।

बॉल प्लेग्राउंड है जहां सब फुटबॉल खेल रहे हैं।

यह हिरण घास खा रहे हैं।

इसमें अंबेडकर की एक पिक्चर भी लगी हुई है।

जिसमें बहुत सारी कैंडल जल रही है।

इनमें पिंक एंड व्हाइट कलर का है।

समान भी यहां रखा हुआ है।

तथा ये कवर्ड का कलर ब्राऊन है।

ब्लू कलर का बैग रखा दिखाई दे रहा है।

कुछ लेडीज है और जिन्होंने साड़ी पेहन रखी है एक ने रेड कलर की एक ने स्काई ब्लू कलर की साड़ी पेहनी हुई है।